पास में ज्यादा लोगों के लिए बड़ी बेंच है तथा दो तीन लोगों के लिए अलग से सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है।

यह फोटो इस मैराथन की फोटो है जहां बच्चे मैराथन दौड़ रहे हैं तथा यह ट्रैक पर तीन ही बच्चे हैं जो दौड़ रहे हैं।

यह एक डॉक्टर गुप्ता का क्लीनिक है।

वो गोल्ड में दिल्ली से डॉक्टर हैं यह उनका घर है जहां वो प्राइवेट में क्लीनिक खोल के रखा हुआ है।

यह फोटो एक ब्यूटी शॉप की फोटो है जहां ब्यूटी शॉप में बहुत सारे अलग अलग ब्यूटी प्रोडक्ट रखे गए हैं।

यह कोई इंटरप्राइजेज की दुकान लग रही है यहां पर मैकेनिकल का सामान मिल रहा है।

यहां पहाड़ के अंदर गुफा बनाई गई है जिस गुफा में एक औरत खड़ी हुई है तथा गुफा के बाहर --

तथा यहां की टाइल्स भी बहोत ज्यादा खूबसूरत है इधर पास ही में दो सिंक बनाए गए है जिनमें आप हाथ धो सकते हो --

यह दुकान की फोटो है जिसे बार्बर शॉप कहा जाता है उस दुकान में जो ये दो सीटे लगी हुई है यह बहुत ही पुरानी है।

ब्लूबेरी कीवी आदि प्रकार के फ्रूट रखे गए हैं तथा इन फ्रूट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन करके रखा गया है।

यह कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो बहोत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है पास ही में बहोत ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी रखे गए हैं।

इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है यह गुरु कृपा आयुर्वैदिक स्टोर की फोटो है जिसके अंदर अभी कोई नहीं बैठा है।

यहां ज्वेलरी अलग अलग प्रकार की ज्वेलरी है जिसमें मोतियों की हीरे की तथा गोल्ड की सभी प्रकार की ज्वेलरी यहां है।

वहां पर एंकर है जो खड़े हुए हैं और अवार्ड्स वितरण करना स्टार्ट करेंगे।

इस गुफा में बहोत छोटा सा दरवाजा है जहां से लोग आ जा सकते हैं इस गुफा में बहोत ज्यादा मात्रा में पत्थर दिख रहे हैं।